का नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं। चेयर लगी हुई दिखाई दे रही हैं। सड़ाओ दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने हमे बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। जिसमे डिजाइन बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने भी यहां पर एक खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है। लोहे की जाली हमे दिखाई दे रही है। लाइट दिख --

और यहाँ पे ऊपर छत दिखाई दे रही है। सामने दीवार हमे दिखाई दे रहे हैं और यहां पर हमे लाइट भी जल --

जहां पर हरी-हरी घास हमें दिखाईं दे रही हैं और ब बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाईं दे रहे हैं।

और बड़े-बड़े पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे है और ऊपर आसमान भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है।

बोक्सेस रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर चेयर भी रखी दिखाई दे रही है। लाइट जलती हुई दिखाई --